जिसमें की स्केटिंग कर के अ वाटरपार्क का आनंद ले सकते है बहोत ही खूबसूरत वाटरपार्क लग रहा है।

अ बहुत सारे-सारे आइटम टंगे हुए है बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है।

बाइक पर एक आदमी सवा बैठा हुआ है यह लगता है बहुत बड़ा शोरूम है।

बाइक लगे हुए हैं ट्रक लगी हुई है कुछ आदमी पेट्रोल ले रहे हैं।